बहोत ही अच्छी तरीके से ढक कर रखा गया है।

यहां बहोत सारी बाहर की ओर--

इस तस्वीर में मैं देख रहा हूं कि एक ट्रक खड़ा है जिसके ऊपर--

इस तस्वीर में मैं देख रहा हूं कि कुछ व्यक्ति एक--

एक लाइन में रखी गई है।

कुर्सियों को का रंग सफेद है और छत के ऊपर पंखे लटकाए हुए हैं।

एक लकड़ी के ऊपर अपने पैरों की सहायता से बैठे हुएं हैं।

लिखा हुआ स्पष्ट नजर आ रहा है नीचे की ओर बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं।

सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग भी है जिसमें--

और एक रास्ता सीधा जा रहा है।

साथ ही रंग बिरंगे फूल इसे और भी खूबसूरत कर रहे हैं।

हवाईजहाज के नीचे दो पीली लाइटें भी जल रही हैं।

यह एक बिल्डिंग है जो कि चित्र में दिख रही है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति लेटा हुआ है उसके पैर पे चोट लगी हुई है और बैंडेज लगा हुआ है।

व्यक्ति का पैर ऊपर की ओर है जोकि सब पष्ट दिख रहा है।

यह एक रेस्टोरेंट है एक लड़का --

इस तस्वीर में खूब सारी सुंदर सुंदर अद्भुत तस्वीरें और सामान को रखा गया है एक व्यक्ति सामने--

पुल की बिल्डिंग पीले और लाल रंग की है।

सामने एक सफेद रंग की पानी की टंकी को भी रखा गया है।

यह तस्वीर नीचे की ओर बैठकर ली गई होगी इसमें एक डाकघर को दिखाया जा रहा है।